बगल मे बहुत सारी घर--

यहाँ पे एक दुकान है जिसमे बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए है बारह पे चाक लगी हुई है खिड़की बहुत बड़े-बड़े कुछ लोग बारह स्कूटी स्कूटी भी बहुत सारी खड़ी हुई है कार खड़ी हुई है।